कई सारी चीजें लगाई गई हैं आजू बाजू कई सारे रोड इंसान घूमते भागते हुए दिखाई--

हरे- भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे है। दिनका समय दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर--

दीवाले व्हाइट कलर से पोती है सामने को ये सब पूजा की सामुग्री रखी हुई दिखाई दे रही।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारी जालियां लगी दिखाई दे रही हैं नीचे ओर नंबरिंग लिखी है ए बी सी डी ।

कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

मुझे सामने एक डोसा रखा हुआ दिखाई दे रहा है चटनी राखी दिखाई दे रही है सामने--

दिखाई दे रहा है। एक बना हुआ दिखाई दे रहा है सामने की ओर--

लगी दिखाई दे रही है सामने की ओर एक हॉल टाइप बना हुआ दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर इधर ट्रैक्टर वैक्टर खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने--

आर_ओ_डब्ल्यू_ए_टी_ई अल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक ए_सी लगी दिखाई दे रही हैं सामने एक और सोफे बेंचेस पलंग लगे दिखाई दे रहे खिड़कियां और गेटे खिड़कियां लगी दिखाई--

कई सारे बैलून लटके हुए दिखाई जो व्हाइट कलर से गोल घूमते हुए दिखाई दे रहा सामने को --

सामने को बैटरी की लाइटिंग लगाई गई है नीचे की ओर कई सारी टाइल्सा वाइल्स लगी दिखाई दे रहे है सामने को टाइल्सें लगाई गई हैं ब्लैक कलर की।